यहाँ पर एक शॉप दिख रही है जिसमे रैक मे सामान रखा है और बोरियो मे भी बहुत सारा सामान रखा है और बोहत सारी लाइट जल रही है।

यहाँ पर एक मीटिंग हॉल दिख रहा हैं जहाँ पर बहोत बड़ा टेबल लगा हुआ हैं और उसके पास में बहोत सारी कुर्सिया रखी गयी हैं।